यहाँ दो लड़के है जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे --

कुछ थैलिया पड़ी हुई है और कुछ लोग उस साइड है जो काम चुनाई कर रहे है एक अंकल है जो इंट दे रहे है।

गिट्टी पड़ी हुई है तगारी भरी रखी हुई है कुछ ईंटे रखी हुई है वो कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है दूर दूर यहां पर इंट की भ --

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है तारों तारों से और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं एक मंडली जा रही है यहां पर वह कुछ पड़ा हुआ है और यहां पर कुछ खड़े हुए साइड में --

और यहाँ रेड कलर का टैक्टर है नीले रंग की ट्र्राली है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है यह पर अंदर कुछ लाइटें लगी हुई है अंदर कुछ तस्वीरें लगाई--

यहाँ पे कुछ पंखे लगे हुए हैं कुछ दरवाजे दिख बने हुए है अंदर खिड़किया लगी हुई हैं एक लाइट का बोर्ड लगा हुआ यहां पर यहां पर कुछ टंगा हुआ है बहार --

इसमें कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हमें कुछ पेड़ पौधे इस साइड बने हुए है लाइन से ये दिखाई दे रहे है।